बड़े और छोटे हैं और यहां पे--

पेड़ वगैरह भी लगे हुए हैं घर भी बने हुए--

और ये यहा पे बहुत सुंदर घर बना हुआ है।

सुनील यादव स्क्रीन सर्विस लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहां पे देख सकते हो ये--

यहां पे आप देख सकते हो ये--

आसमान दिख रहा है और यहां पे--

पेड़ वगैरा दिख रहे हैं ये यहां पे--

यहां पे तस्वीर लगी हुई है यह पेड़--

बैंक लिखा हुआ है और यहां पे देख सकते हो ये मीटर भी दिख रहे है।

यहां पे बहुत सारे सामान रखा हुआ है ये यहा पे--

रखी हुई हैं वाटरकुलर दिख रहे हैं।

ये यहां पे बिल्डिंग बनी हुईं है यहां पे--

लिखा हुआ है ये यहां पे सीढ़ी दिख रही है।

गुलदस्ता भी रखा हुआ हैं फुल वगैरा भी में देख रहें हैं टेडी भी दिख रहे हैं।

पेड़ वगैरा भी दिख रहे हैं एक गाड़ी का रंग सफेद और एक गाड़ी का रंग काला है ये यहां पे आप देख --

तीन चार ऐ_सी रखी हुई है बाल्टी रखी हुई है और यहां पर यह देख सकते हो--